बगला बैठे हुए हैं बैठते हुए बगला बहुत सुन्दर दिखाई दे रहें हैं बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है काफीअच्छा सुन्दर है।

हरे-हरे छोटे-छोटे पेड़ लगाए गए हैं कुछ पीले हैं कुछ हरे हैं कुछ औरेंज कलर में हैं निचे घास है हरे पत्ते हैं पत्तों में डिज़ाइनें बनी गई हैं।

बहुत अच्छी प्रतिभा बनाई गई है सुंदर सी तस्वीर है।

अच्छी प्रतिभा दिखाई दे रही है सुंदर नजारा है पानी का टैंक रखा हुआ है पेड़ ही रखे गए हैं गमले रखे गए हैं कुर्सियाँ डाली गई हैं कई प्रकार --

शॉप में त सटले हैं सटने के तीन-चार पोटले बानी हुए हैं ऊपर तीन मंजिल मकान है ऊपर टंकी रखी गई है।

कुछ जस सा दिखाई दे रहा है पीछे हरी-हरी घास लगी हुई है फूल लगे हुए हैं।

बगल में खम्बे लगे हुए हैं बगल में गिट्टी रेता भी डली हुई है माल गाड़ी के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ जा रहा है बहुत सुन्दर तस्वीर निकल कर आ रही है।